ये एक यहां पे बड़ी सी होटल है। यहां पे बहोत सारे टेबल से--

और यहां पे बड़े बड़े शीन में बहोत सारे फूलों और आईटम से ऊपर फूलों की लड़ा डाली गई है।

बनाया गया है पानी यहां पे बहुत ज्यादा--

ये एक यहां पे बड़े से ट्रॉली में बड़ा सा एक यहां पे लोहे का--

देख रही है यहां पे अंदर एक आदमी है बाहर एक आदमी है।

आदमी दिख रहा है वह साइड एक बड़ी सी है।

यहां पे एक कार दिख रही है घ बिल्डिंगों के सामने यहां पे--

यहां पे रोसड़ बाजू में बहोत सारे खेता दिख रहे हैं हरी भरी फसल उठी हुई है।

बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है उसमें यहां पे एसीया भी है।